चल हमहू सब होबै तनी घुममे वुममे देखबै कित्ते कित्ते सामान रखल है चल घूम घाम के अइबै--

चल रे पानी कथे-कथे आ गइल लो चल रोपे तब न धान होइबे त खइबे ठंडी के मौसम आ गइले ठंडो लगते चल रे सबरे-सबरे चल।

कितना अच्छा मोर है देखहि सुंदर लग हइ खेता में बैठल हइ यहाँ नहीं रहना चाहिए एकरा त रहना चाहिए--

चल ख़रीदबे खइबे सेब बा खरीदवे अनरवा ख़रीदबे सब केल्वो खरीद के खइवो --

चल पर्कवा में झुलबै | देखहि केतना आच्छा पार्क लगल हइ | झुलवा सब लगल हइ सब कुछ लगल हइ चल कुदबै खेलबै सब कुछ करबै।

चल हमहू करबै तुहु करबे डांस ले लेबै प्राइज मिलतो डांस करते सब देखतै कूदतै खेलतै।

सहरवा में मिलय हेते ना चल ने सहरवे में लेके घुरवई बेठवई मेलवा में छुक छुक ट्रेन में चलते रह --

तो देहतिया में की मिल हइ सब मुर्गा के मीट मिल हइ ?

देखहि मौल हौ लड़की के मौल हौ लड़की के कपड़ा मिल हौ चल सादी बियाह में यहीं कपड़वा जाके खरीद लेबै अच्छा अच्छा सूट हो टॉप हो सब कुछ हो।

दिह मरचा है हरा हरा मरचा है लाल मरचा है सब मरचा है अचार बनावेला कोबी बोबी सब है।

डुबकी मारलेबै गंगा जी में पानी में डुबकी मार के चल अइबे चल अच्छा से नहा उहा लेबे हे।

देखहि फुटबॉल के है लड़की कितना भाग लेलकै सब लड़किया तरक्की कर है और हमे सब रोटी घर मे बेल हिये और खिलव हिये सास ससुर के।

जहा जंगला है वहीं घरा बनैलकै एतना जंगला है दू तीन गो घरवो मे संपवो ढुक जैतइ।